एक बिल्डिंग दिख रहा हैं बिल्डिंग काफी बड़ा दिख रहा हैं बिल्डिंग से काफी ससारे विंडोज़ दिख रही हैं और आसपास मे काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है।

लगे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे सामने बैंक दिख रहा है सामने एक कार्ड लगा हुआ दिख रहा हैंजो जो की ब्लू कलर कुछ व्हाइट कलर मे कुछ लिखा हुआ हैं और कुछ शर्ट दिख रहा हैं जो की व्हाइट --

कुछ पर्सन बैठे हुए दिख रहे हैंये ऑरेंज कलर का शर्ट यहाँ पे काफी सारे बुक्स दिख रहे हैं अलग-अलग--

यहाँ पर एक ऑटो दिख रहा है ऑटो ब्लैक कलर में दिख रहा है और आस पास में कुछ बाइकस वगैरह रखी हुई दिख रही है आसमान दिख रहा है आसमान कलर ब्लू कलर में दिख रहा है।

कुछ येलो कलर में दिख रहे है सामने एक शटर दिख रहा है और आसपास में यहाँ पर कुछ मिट्टी वगेरा दिख रही है एक पर्सन जूते पहन रखे है जो ब्लैक कलर के है सामने --

दिख रही हैं मुझे इसके अंदर मे प्यार दिख रही हैं पौधे छोटे-छोटे जो ग्रीन दिख रहे हैं मुझे कुछ फ्लैट दिख रहे हैं आसमान दिख रहा हैं कुछ बा--

बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग का पेंटिंग कलर वाइट कलर दिख रहा है सामने में कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जो वाइट और पिंक कलर में दिख रहे हैंऔर कुछ विंडोज दिख रही है।

ये इमेज में एक बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग काफी बड़ा दिख रहा है और बिल्डिंग के सामने एक मंदिर दिख रहा है मंदिर में एक प्रतिमा दिख रही है और आसपास मैं कुछ परसन खड़े हुए दिख रहे।

कुछ ऑरेंज रेड कलर में दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है आसमान कुछ ब्लू व्हाइट कलर में दिख रहा है और यहाँ पर आस-पास में कुछ कविता वगेरह दिख रही है।

दो पर्सन दिख रहे है पर्सन ने गॉगल्स पहने हुए दिख रहे है व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ दिख रहा है और केप लगाके रखा है केप कलर का दिख रहा है और यहाँ पर जो कुछ पर्सन इधर उधर जाते दिख रहे हैं।